और यहाँ पे बड़ा सा टीसी बोर्ड भी लगाया हुआ है और यहाँ पे कार बाइक बहुत सारे लोग फिर रहे हैं यहाँ आजू बाजू--

और टू व्हीलर भी छोडिया और यहाँ नदी के बाजु में हरी भरी घास दी हुई है पथरे है और नदी में बहोत सारे लोग--

गिर वीर है और यहाँ पर बहोत नदी साफ है और इसके आजु बाजु--

यहाँ पे बहुत सारे झाड़ा है आजू-बाजू यहाँ पे राइट साइड में एक व्हाईट कलर की शीट भी लगाई गई है और यहाँ पे बहुत सारे गया भैसा कलर कलर के छोटे इनके बच्चे--

जानवर चल रहे हैं और यहाँ पे और इनका खाना खा रहे हैं और इनके साथ छोटे-छोटे बकरियाँ भी है और छोटे-छोटे गाय भी हैं यहाँ इनके साथ।

एक बड़ी सी मंदिर है और यहाँ पर भेंसे के पुतले लगाए हुए है और उनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ--

अः पिले कलर के लाल कलर के और छोटे छोटे पत्ते भी लिए गए है सजाने के लिए और यहाँ पर बड़े बड़े लेटन के--

ये एक बड़ा सा वाटरफॉल है और ये ऊपर सब बहता हुआ पानी नीचे जमा हो रहा है और यहाँ पे बहुत सफेद पानी है।

और आजू बाजू बहोत सारे फतरे हैं और बड़े बड़े झाड़ भी दिख रहे हैं और ये पानी सीधा नीचे कुएं में आकर जमा हो रहा है और पानी ये झाड़ा भी उठे हुए हैं।

और यहाँ पे आजू-बाजू बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं आजू-बाजू घरा भी हैं और यहाँ पे छोटे-छोटे फथरे और--

ये एक बड़ा सा मॉल है स्क है एप्लीकेशन सेंटर है कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर है यहाँ पे थ्री फ्लोर्स के--

ये एक शॉप है रूबिया टोटल एजेंसीस लुब्रिकेंट्स का यहाँ पेड़ मिलता है और यहाँ पे एक बाहर गाड़ी भी है लेफ्ट साइड में एक ऑटो भी खड़ा हुआ है और अं--

गाड़ी के ऊपर हेलमेट भी रखा हुआ है यहां पे बहोत सारे पेंट के बकिट्स रखे हुए है और यहां पे भी राइट साइड में डीजल बकिट्स भी रखे हुए है।

पिल्लर्स भी दिख रहे है और लाइटिंग भी पुरे यहाँ से वहा तक पुरे चालू है फिर भी यह लोग--

बड़ा सा स्क्रीन भी है लैपटॉप कंप्यूटर का और यहाँ ऊपर एक घड़ी भी है स्क्रीन के ऊपर लाइट भी है और यहाँ पे फैंस लाइट --

एक्स्ट्रा बोर्ड भी है राइट साइड में और ये लड़की रेड टी शर्ट पहनी हुई है और उसके पास भी एक लैपटॉप है।

कपड़े टे-टेबल रखा हुआ है और यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए दुल्हे के बाजू और यहाँ पर बहोत सारी--

और यहाँ पर छोटी छोटी घास भी उगाई गयी है और यहाँ पर पानी के फवारे--

यहाँ पे ये डांसिंग क्लास है और यहाँ पे एक्सरसाइज भी किया जा रहा है यहाँ पे बड़ी सी ईसी भी लगाई गई है और यहाँ पे दीवार वाल पे--

और अपने टीचर यह एक्सरसाइज को देख के दूसरे बच्चे भी अपना कर रहे है एक्सरसाइज --

और ये तस्वीरें उतार रहे हैं और इनके गलों में बैग डाला हुआ है और यहाँ पे स्टेज के ऊपर ये मूर्तियों को रखा हुआ है।

और यहाँ नीचे मठी गिरी हुई है आजु बाजु आसमान दिख रहा है और यहाँ पर त्रिशूल भी है।

और यहाँ पर भगवाना भी है बहोत सारे जैसे की पीछे तस्वीरों में दिखाया गया है और यहाँ पर बहोत सारे लोग भी है।

बड़ा सा जंगल है और उसके सामने एक बड़ी सी रोड जाते हुए दिख रही है।

और उसके ऊपर एक टू व्हीलर भी जा रहा है और ऊपर आजु बाजू बड़े बड़े पहाड़ा रहे पथरे दिख रहे--

और आजु बाजु रोड के बहोत बड़े बड़े झाड़ा भी है और उन झाड़ो को जादि भी मारी गयी है और यह पेड़ झाड़ है।

एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मास्क पहने हुए अलग-अलग कलर के और यहाँ पीछे नर्स भी ठहरे हुए हैं और यहाँ पे पीछे पेशेंट भी हैं--

ई माज़ा कोको कोला अलग अलग जूस इसमें भी रखा हुआ है।

और ऊपर टेबल के ऊपर बड़ा सा कट्टे के ऊपर छोटे पॉट्स में छोटे-छोटे प्लांट्स भी लगाए गए हैं और वॉल को व्हाईट कलर किया गया है दोनों साइड पॉट्स रखे हुए हैं।

बैठने के लिए सोफा भी डाला गया है और यहाँ पर टेबल पर कीबोर्ड भी पड़ा हुआ--

एक बड़ी सी मंदिर है यहाँ पर हर पुजारी का अलग अलग सामान रखा हुआ है और यहाँ पे--

फ्लावर्स लगाए गए है अलग अलग कलर के और पथरो को--

बड़े बड़े झाड़ है जो की हरे हुए पत्ते लगे हुए है और ऊपर आसमान दिख रहा है और यहाँ पर पानी सफ़ेद--

हफ्ता पर तो बहते बहते हुए सीधा आगे बढ़ रहा है यहाँ पर छोटे बड़े सभी पत्रिया आरही है बड़े बड़े--

पहाड़अन का पानी दिख रहा है आजु बाजु बड़े पहाड़अन भी है रेती--

हेडसन का दही दूध घी भी मिलता है यहाँ पे एक रेड कलर का बाहर डस्टबिन भी है और यहाँ पे दोनों साइड से छोटे-छोटे--

एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है यहां पर लेफ्ट साइड में बॉक्सेस में बहोत सारा सामान अलग अलग शेप में अलग अलग सेल्फ सामान रखा हुआ है यहां पर सामने भी बहोत सारे--

छोटे एल्बो पाइप्स भी हैं बड़े पाइप्स भी हैं टेबल भी हैं थैलों में भी सामान है सीमेंट भी मिलते हैं गोल पाइप भी मिलते हैं और यहाँ--

थैली में टमाटे भी दिख रहे हैं और राइट साइड में भी बहोत सारे शेल्फ में बहोत सारा सामान रखा हुआ है बॉक्सेस में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

चेंज किया जाता है फोड भी किया जाता है सिम नए सिम भी दिए जाते हैं और यहाँ पे मोबाइल वी वी आई आई के दूसरे सिम --

और यहां पे कटिंग का बहोत सारा सामान पड़ा है कैंची है कंधी है शेविंग मशीन ट्रिमर्स है और यहां पे--

पहने हुए हैं और यहाँ पे जॉगिंग टीचर भी है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे फड़े हथरी गिरे हुए हैं मट्टी है हरी हरी घास उठी हुई है.

और बड़े बड़े झाड़ भी और ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

एक बड़ा सा एक्सिस बैंक एटीएम है और यहाँ पे अंदर वाचमैन भी है और यहाँ पे ए_ टी_ एम_ में--

और यहाँ पर बहोत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में पैसे निकालने के लिए--

ये एक बड़ी सी शॉप है और यहाँ पे छोटे टडी बियर्स तागे सुईया और बहुत सारा सामान है यहाँ पे।

यह एक बहार बड़ी सी लाला कलर खड़ी हुई है और आजु बाजु बड़े बड़े--

और बहार टू व्हीलर भी पार्क की गयी है और आईड साइड में बड़े बड़े --

अ बादाम का झाड़ है यहाँ पे जाली खींची गई है और दोनों साइड डिवाइडर्स लगाए गए हैं और रोड पे कलर भी मार रहा है व्हाईट ।

यहां पे टेबल के ऊपर अ म् टेबल के ऊपर फुट्टे रखे हुए हैं और यहां पे पंचांग अ खुर्चियाँ भी रखे हुए--

और यहाँ पे पीछे बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया और यहाँ पे इनका फोटोशूट चल रहा है।

यह एक और रेलवे स्टेशन है रिटंग लग रहा है यहाँ पर बाजू पड़ रहे है बहोत सारे बोर्ड भी लगा हुआ --

बड़े-बड़े झाड़ा भी हैं और ऊपर ब्लू कलर का आसमान भी दिख रहा है और यहाँ पे यलो कलर का बोर्ड दिख रहा है --

ये एक बड़ी सी मंदिर है और ये रात का वक्त है यहां पे बहोत सारे लोग है और यहां सामने गेम ज़ोन बनाया गया है और नीचे ब्ल्यू --

भी दिख रहे हैं और यहाँ पे सब डांस भी कर रहे हैं और यहाँ पे कलर कलर के फूल भी दिए गए हैं ऊपर आसमान दिख रहा है बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं और बड़े-बड़े झाड़ भी हैं।

आधार कार्ड है एनरोलमेंट किया जाता है यहाँ पर पीछे शील्ड भी लगाई गया है और यहाँ पर टेबल के ऊपर फाइल है।

और यहाँ पर इंक की बोतल भी है गम की डब्बी भी है और यहाँ साइड में बैठने के लिए चेयर --

ये एक मछियाँ की शॉप है यहाँ पे छोटे मच्छियाँ बड़े मच्छियाँ सभी मिलते हैं और यहाँ पे काटा करने के लिए कांटे भी हैं।

और यहाँ पे आदमी अलग अलग पनिया में डाल लेके मछिया बेटे है और इनके सामने पेसे भी है पीछे साईकल भी है और यहाँ पे बोहोत सारे लोग भीड़ भाड है।

और सुबह का वक्त है और यहा पे बड़े बड़े मछिया भी दिख रहे है राईट साइड में और यहा पे लेफ्ट साइड में दुकाने भी बहोत सारी है।

और कैश नहीं निकला तो स्लिप भी निकलती है और यहां पे लाइटिंग भी एल_ई_डी बहोत सारी चालू है और अंदर लोग कैश निकाल रहे हैं और बाहर भी वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए--

एक बड़ा सा चौपाटी है पानी बह रहा आ रहा है आ रहा है और यहां पर बहुत सारे लोग भी बैठे ठहरे हुए हैं।

श्री हिंगलाज बुक स्टोर है यहा पे बहोत सारे बुक्स मिलते है स्कूल के कोल्लेजेस के भी बुक मिलते है यहा पे--

लाइब्ररी के तरफ रेता है यहाँ पे बेंच पेपर सभी है यहाँ पे और यहाँ पे बोहोत सारी बुक्स है और यहाँ पे राईट साइड में भी एक मेडिकल शॉप --

यहा पे लोग व बच्चे बुक लेने के लिए खडे हुए है और यह पे बायर बेट और केम्पुट रखा हुआ है और यहा पे केरम--

ये तराशा जाता है और यहा पे छोटे छोटे मूर्ति और पुराना सामान निकलता है जब राजाओ के वक्त का और यहा पे छोटे छोटे--